यह एक साइकिल की शॉप है साइकिल के --

यहाँ एक गिरे हुए इंसान को बहुत उच्चतर लेवल पे भी ले जा सकते हैं।

एक इँसान अपनी सेल्फी लेता हुआ अपने खेत में फोटो खींच रहा है।

इससे अगर यहाँ ख़त्म हो जाए तो हमारा जीवन असंभव जी असंभव हो जायेगा जीने के लिए।

और यहाँ से हमें बहोत विभिन्न प्रकार के जड़ीबूटियां और फल वगेरा भी मिल सकते है।

यह जलेबी है जलेबी बहुत स्वादिस्ट खाने में होती है।

और यहाँ हमें मतलब दोस्त लोग आपस में जब झूला खेलते हैं तो एक दुसरे को गिरा देते हैं|

मार्सल आर्ट सिख रहे हैं मार्सल आर्ट हमारे जीवन में बहोत --

प्रयोग होगा अगर हम इसे ढंग से सीख ले या हमें --

सेल्फ डिफेंस के लिए हमेशा --

इंसानों का जीना मुश्किल हो जायेगा।

पेड़-पौधों का तो हम सभी को पता ही है।

फुटबॉल भी बहुत मजा आता है खेलने में।

और उस गेंडे के नाक से पानी निकल रहा है।

गए है खेलने के लिए पदार्थ।

इन चेयर पे प्लास्टिक लगा हुआ है।

बेड में दो कुशिओं --

टावर के नीचे एक पुल है पुल के इर्द गिर्द पानी है और दो चार पेड़ हैं जो बहुत सुंदर दिख रहे हैं।

यहाँ आदमी कोई जंगल में है यह एक फूल अपने हाथ में पकड़े हुए हैं यहाँ बहुत सारी झाड़ियाँ हैं कुछ हरेहरे पौधे हैं।

यह एक सुंदर भवन है|

शायद एक धर्मशाला भी हो यहाँ बहोत सुंदर खिड़कियाँ लगी हैं।

क्लास रूम में बहुत सुंदर मेज लगे हुए हैं एक बोर्ड है जहाँ पे बच्चों के --

पूल बहुत सुंदर प्रतित दिखाई दे रहा है वहाँ एक अपार्टमेंट भी है उसमें --

जिम में बहुत सारी चीज रखी हुई है वर्कआउट करने के लिए यहाँ लोग बॉडी बिल्डर बनते हैं।